इस पिक्चर में मकान बन रहा है इसकी छत ढल रही है जिसमे चार व्यक्ति काम कर रहे है।

और साइड् से एक अअ गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यह एक मस्जिद की पिक्चर है मस्जिद ग्रीन कलर से पेंट हैं तथा --

और हरे कलर से डेकोरेट किया हुआ एक --

दवाइयां लिख रहे उनके टेबल पर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है और कुछ व्यक्ति --

हॉस्पिटल है जिसमे एक एनिमल को दो डॉक्टर --

नारियल के पेड़ दिखाई दे रहें हैं तथा छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिखाई --

इस पिक्चर में कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें पांच व्यक्ति --

यह एक मस्जिद का गेट हैं।

इस पिक्चर में एक किसी व्यक्ति की प्रतिमा दिखाई दे रही है।

बाजू से दो चैनल्स और दिखाई दे रहे हैं जो बंद है।